यह एक रेस्टोरेंट का बैनर है जीसमें लिखा हुआ है आशा रेस्टोरेंट ।

साइड में एक दो पॉट है जिसमें--

एक कुछ लोग घूमने आए हुए हैं।

ढलाई का काम कर रहे हैं।

और सामने बहोत सारे कार्टून है जीसमें कुछ बिस्कुट के--

कुछ लोग है जो मोबाइल में देख रहे हैं।

कुछ लॉर्ड बुद्ध की तस्वीरे लगी हुई है।

जीसका गोल्डन कलर से उसको पेंट किया गया है।

इसमें एक औरत है जो इशारा--

और साइड साइड में कुछ पेड़ पौधे भी हैं।

ऊपर तरफ में थोड़े फ्लैग भी टांगें हुए हैं।

और साइड बी पीछे तरफ में एक पानी का टंकी हे।

बहुत पेड़ पौधे हैं मौसम एकदम साफ है धूप निकला हुआ है।

ये एक पुलु इनडोर स्टेडियम रोइंग में है।

भी है साइड साइड में और एक टावर भी है।

एक गोडाउन में रखा हुआ है।

जो दो गाड़ी लगी हुई है।

टेबल और चेयर भी लगे हुए हैं।

और नदी का पानी थोड़ा येलो है।